मूर्ति दिखाई दे रही है सफेद कलर की मूर्ति है और उसमे से पानी निकलता है पीछे की और मे एक घर भी दिखाई रहा है जोकी मुझे ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है।

बीच मे और मुझे दुकान दिखाई दे रही है। दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर स्नैक बार लिखा हुआ है और यह आकर मुजे ब्लैक कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर व्हाइट कलर --

और यहाँ पे मुझे मैक्ज़िमा मशीन कार्डियो मस्कुलर एक्टिविटी के लिए दिखाई दे रही है और एक सायक्लिंग मशीन भी दिखाई दे रही है सामने की और एक एसी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सीलिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है।